हिंदू धरम की एक झांकी दिखाई गई है।

इन मूर्तियों के साथ काफी संख्या में लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं।

काफी सुंदर गुफा लग रही है।

गार्डन में बैंचें बैठने के लिए रखी हैं।

इमारत के नीचे काफी चार पहिया वाहन पार्किंग मे खड़े है।

रंग में ये रंगी हुई है।

पिक्चर में हमें एक ज्वेलरी शॉप दिखाई गई है।

यह काफी सुव्यवस्थित तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है।

इस फलों की दुकान में काफी तरह के फल रखे हुए हैं।